वे लाल रंग में कृष्णा विहार लिखा हुआ है सड़क के ऊपर बहोत सारा पानी फैला हुआ दिखाई दे रहा --

हमें कुछ गमले भी दिखाई दे रहे हैं हमें दो चेयर व एक टेबल पड़ी दिखाई दे रही है।

फायर रिस्ट्रिक्शन भी दिखाई दे रहे हैं।

जो स्टील की बाल्टी से इस पितल की टोकनी में जल चढ़ा रहे हैं जो जल शिवलिंग को चढ़ रहा है।

जैसे घीया परमल प्याज गोभी लहसुन गाजर नींबू --

इस पिक्चर के अंदर हमें एक स्कूल का दृश्य दिखाया गया है जिसमें चार छात्राएं एक प्रोजेक्ट को लेकर खड़ी हुई हैं।

इस पिक्चर के अंदर हमें गेट के ऊपर एक बड़ा पोस्टर लगा दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर लॉन्ड्री लैब --

जिसके ऊपर बोर्ड के ऊपर हरे रंग में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान--

ये दृश्य एक बिल्डिंग के बाहर का है जिसके बाहर वृंदावन गार्डन --

व बोर्ड के ऊपर खिलची प्रिंटर्स शादी कार्ड डिजिटल कार्ड बिल बुक लेटर पैड --

ये एक बैंक के बाहर का दृश्य है।